ये एक मकान की पिक्चर है जहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं।

यह एक शादी हॉल की पिक्चर है जहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और बड़े-बड़े बलून जैसे लगे हुए हैं दो आदमी गेट के पास खड़े हुए हैं।

कुछ लोग मिठाई वगैरह खरीद रहे हैं।

काच के बड़े-बड़े शोकेस बने हुए हैं।

ये एक रूम की पिक्चर है रूम में कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं।

काफी सारी गाड़ियां चल रही हैं।

आस-पास कई सारे लोग बैठे हुए हैं।